एक सामने बोतल रखी हुई है टिशू रखे हुए हैं कुछ खाई हुई प्लेट रखी एक चश्मा दिख रहा है मुझे टेबल पर--

येलो और रेड कलर के बलून से डेकोरेशन किया गया है आईडिया का थीम भी येलो कलर ही है।

आइडिया का आई उल्टा लिखा रहता है और डी ई ए सीधा लिखा रहता है।

काफी अच्छा है काफी बड़ा दिख रहा है और लाइटिंग भी बहुत सारी--

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये ग्राउंड है जहां पे काफी लड़के खड़े हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक क्लासरूम है जहां पे टेबल और चेयर दिए हुई है टेबल के साथ ही अटैच --

चेयर भी दिए हुई है और सामने ब्लैक बोर्ड लगे हुई है दो टाइप के ब्लैक बोर्ड है एक ब्लैक बोर्ड है एक व्हाइट बोर्ड है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि एक रूम है रूम मे डबल बेड रखा हुआ है साइड मे नाइट लैम्प रखा हुआ है।

काफी अच्छा हरा भरा दिख रहा है एक आदमी दिख रहा है शायद ये एक वॉकिंग लेन है।

काफी हराभरा सा पार्क रहा है काफी सुंदर और बहुत ही नेचुरल सीन लग--

जैसा की मे देख पा रही हूं ये एक मॉल है मॉल मे क्रिसमस का कुछ डेकोरेशन किया गया है काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है काफी लोग दिख रहे है ।

क्रिसमस ट्री के सारे फ्लावर लगे हुए हैं एक्सलेटर भी अच्छे लग रहे हैं।

सब कोई मोबाइल देख रहे हैं लड़का भी उसके साथ उसका मोबाइल में देख रहा है आगे काफी लोग अपनी-अपने चेयर पे बैठे हुए हैं एक डस्टबिन हुआ है ।

वहां कुछ टंकियां रखी हुई है पानी की बहोत बड़ी-बड़ी टंकी रखी हुई है और इस टंकी में एक फ्लैट भी रखा हुआ है।

एक उसके ऊपर बर्ड बैठी हुई है काफी दूर एक बहुत बड़ी है धुंधली दिख रही है काफी सारा व्यू दिख रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक मॉल है मॉल में काफी लोग शॉपिंग करने आते हैं काफी सारी शॉप्स खूली हुई है यहां पे बाटा की शॉप मैक्स --

एक है जो कि उनको योगा करवा रहा है पीछे एक लड़की बैठी हुई है जो कि योगा कर रही है।

काफी सारे बोर्ड लगे हुए हैं और बिल्डिंग में सारी कांच की विंडोज दी हुई है काफी फ्लोर की बिल्डिंग है सामने बहुत सारे पेड़ पोधे लगे हुए हैं।